बच्चे लोगो पी_टी की प्रैक्टिस कर रहे हो जो है बहुत सारे बच्चे हैं दो --

मंदिर के बाहर बहोत सारे पेड़ है बहोत सारे लोग इकट्ठा हुआ है।

टिकिट घर है टिकिट घरर के अंदर दो तीन लोग हैं।

प्लांस नर्सरी है दो तीन पाइप हैं पानी डालने के लिए--

काला है काला हो ओ मे बहुत सारे पक्षी पक्षी हैं पेड़--

एक बाड़ है कलर वाला कबाब है विंडो है।

सब लोग देख रहे हैं एक बल्ब है एक दरवाजा है टेबल है ।